सामने दो कार भी लगे हुए हैं और दो साइकिल भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

सामने दो लड़के जा रहे हैं और यहां का बिल्डिंग में ऑरेंज और वाइट कलर का पेंट किया--

यहां पर एक बहोत बड़ा कुँवा टाइप का कुछ नजर आ रहा है और वो बहोत पुराना है।

और यहां साइड में कुछ आदमीन लुंगी और शर्ट पहन के खड़े हैं।

के ऊपर फूल वगैरा भी लगे हुए हैं और कुछ लाइट भी दिख रहे--